ये एक होटल है उधर टेबल है सब कुर्सियां लगी हुई है।

ब्लॅक दुपट्टा है वो पर्स में से पैसे निकाल के दे रही है और सब अलग-अलग बास्केट में रख --

एक लेडीज है जो इसमें रेड कलर की साड़ी पहनी है और--

ये एक ग्राउंड जैसा है जहां सब भेड़ और बकरियां खड़ी है।